आगे लाइटा लाग री है हरी लाल माइने भी एक एक लाइट है फिर बाद मे आगे भी लाइट है बोली सारी।

दस बारह मच्छी पड़ी है दस बारह से उलटी ज्यादा ही होगी नीली कलर की बाल्टी पड़ी है डब्बा पड़या है स्टील का।

हेर एक न उपरे नीचे हाथ करन लाग रिया नीली पैन्ट पहर रखी है लाल कुर्ता पहर रख्या काली पैन्ट पहर रखी है एक ले धारया की बुसेट पहर के आ गंजी पहर रखी है ऊपर पंखा चाल रया।

एक आदमी दो आदमी धोली सर्ट नीली पैंट गोजा मे हाथ दिया खड़ा है।

दो गाड़ी खड़ी है और आर बार आदमी खड़े है काली गंजी पहन रखी है।

हॉस्पिटल है आदमी एक आदमी जा रिया है एक आदमी खड्या है कडया के हाथ लगा रख्या मोटरसाइकिल के हाथ लगा रख्या।